यहां पर रेल के ऊपर लिखा हुआ है इंडियन रेलवे छे--

यहां पर एक मास्टर लाइट भी लगाया गया है।

बहोत सारे दुकान लगे हुए है यहां पर एक बिजली का पोल भी दिख रहा है।

यहां पर अ बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक दो बंदा भी टहल रहा हैं यह पर बोहोत हरियाली है यहां पर एक--

यहां पर बहोत सारी रैंक में किताबें रखी हुई है एक बंदा हाथ में किताब लिए हुए खड़ा है।

यह एक दुकान है यह एक दूध पार्लर है यहां पर बहोत सारे औरत और मर्द खड़े हुए हैं यहां पे दो--

यह एक चर्च है यहां पर बहोत भीड़ है।

हॉस्पिटल में बहुत सारे खिड़की भी लगाए गए हैं।

यह एक हेयर कटिंग की दुकान है यहां पर एक लड़का हेयर कटिंग कराने के लिए बैठा हुआ है यहां पर बहोत बड़ा एक--

जो काला रंग का शर्ट और ब्लैक रंग का जैकेट पेहना हुआ है यहां पर एक काउंटर पे बहोत सारे दीपक भी रखे हुए हैं।

दुकान में बहोत सारे चीज मिलती है यहां पे तूथ ब्रश है दुकान में एक डिजटल तराजू भी है यहां तेल है।

यहां पर बहोत्त भीर है यहां पर बहोट सारा सुन्दर-सुन्दर पेर पौधे भी है।

या एक पार्लर है। जिसका नाम है ए वन इंजन --

यहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं।